इस तस्वीर में हमे एक ए.टी.एम. नजर आ रहा है जहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर क्यूब ए.टी.एम. |

जिस पर लॉरियल भी लिखा हुआ है।

नीली कलर की छत है ऊपर सामान रखने की भी खाली जगह दिख रही है।

इस तस्वीर में हमे बोहोत से लोग जो की कुर्सिया पर बैठे है। कुछ खड़े है। नजर आ रहे है।

कुछ सीढ़ियाँ दिख रही है। सीढ़ियों के पार युनि मार्ट कर कर भी एक दूकान नजर आरही है।

यहाँ हमे आगे बहुत सारे पैकेट जैसे सर्फ एक्सेल रिंस --